ये रेडी हुई थी ये एक स्टेज हैं और --

जैसे कि मैं देख रही हूँ सुबह का वक्त है ये एक काली और मां दुर्गा की मंदिर है जैसे कि ऊपर में --

पार्लर है ये सलौ ब्राइडल लुक --

व्यक्ति खड़े हैं कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं में यहां बहुत ज्यादा बाइक और स्कूटी पार्कड है।

के मैं अपने हसबैंड के साथ दो चार स्टैच्यूस बने हैं।

जैसा कि मैं देख रही हूं ये पेट्रोल पंप है सुबह का वक्त है पेट्रोल पंप के पीछे एक पेर है एक व्यक्ति अपने बाइक में पेट्रोल भरवा रहा है।

के पम्प के पास ही में यहाँ वॉशपेसन है।

जैसा कि मैं देख रही थी यह एक छोटी सी ग्रॉसरी की शॉप है जहां नेसेसरी के सामान मिल सकते हैं यहां पर टॉफिस कैंडिस के डिब्बे रखे हैं।

जैसा कि मैं यहां देख रही हूं यहां कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं यहां पूरे बंबूस बांधे रखे हैं और बंबूस के पीछे जो --

आई_डब्‍लू हल्‍की दिख रही है एल_एस लिखी हुई है दोपहेर का वक्‍त है कड़ी धूप है और कुछ वर्कस काम कर --

है पीछे की तरफ साइड की तरफ सब्जियां भी मिल रही हैं एक व्यक्ति खड़ा है।

जैसा कि मैं देख रही हूं ये फिश मार्केट है यहां बहुत बड़ी बड़ी फिश रखी है अलग अलग रकम की फिश रखी हुई है मछलियां रखी हुई है --

कलरफुल लाइट्स हैं बाहरी की तरफ ग्रीन ऐंड येलो बलून से डेकोरेटेड है ये एक रेस्टोरेंट है कर्नाटका कैफ़े है।

जैसा की मैं देख रही हूँ यह भी एक ग्रोसरी शॉप है और इस ग्रोसरी शॉप में ज़्यादातर हेयर केयर प्रोडक्टस मिल रहे है जैसे की--

जैसा कि मैं देख रही हूं ये एक बाइक का शोरूम हैं। यहां बहोत अलग अलग कंपनी के बाइक लगे हुए है।

होंडा की बाइक है बहुत सारी बाइक है पीछे की तरफ रीसेप्शन की जगह में एक अंकल जी बैठे हुए हैं जो --

जो इस दुकान के ओनर लग रहे हैं दो रेड चेयर भी है कांच की दरवाजे कांच की खिड़कियां हैं दो बैनर लगी हुई है बाइक के प्रमोशन के लिए।

कुछ व्यक्ति है जो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं वो लोग नंगे पाँव हैं और यह मंदिर भी बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है यह --

तीन जगह डस्टबिन रखी हुई है कुछ कुछ गेस्ट आए हुए हैं कुछ व्यक्तिया भी दिख रही है का कार्पेट भी ब्राउन हैं।

जैसे कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है और सुबह अ इस रास्ते में एक बाइक पार्क है पास में बिल्डिंग है।

मि मिठाईयां मिल रही है रियल की जूसेस रखे हुए है घी शुद्ध घी रखे हुए हैं नमकीन रखें हुए हैं अन्य प्रकार के खाने के--

ये दुर्गास्तान ब्रांच की बैंक हैं --

जैसा कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है और यहां बहुत सारे बिल्डिंग दिख रही हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दूर दूर तक नज़र--

की पार्टी के लिए डेकोरेशन किया गया है यहाँ ग्रीन कार्पेट है पीछे की तरफ पूरे आर्टिफिशियल फ्लावर से पूरा सजाय गया है पिंक --